और रोड पर भी काफी बर्फ जमी हुई है जिस पर गाड़िया खड़ी दिख रही है।

सब्जी ग्रेट में रखी हुई है।

देसी अंग्रेजी लिखा हुआ है और दुकानों के बाहर काफी लोग खड़े हुए--

यहां पर कुछ दुकानें भी दिख रही हैं।

हम यहां पर देख सकते हैं।

और दुकानदार बैठा हुआ नजर आ रहा है डम्मी को--

हरा मैट बिछा हुआ दिख रहा है।

जिसमें से पांच लोग एक्सरसाइज और दो लोग खड़े हुए दिख--

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक--

यहां पर लोग खड़े हुए दिख--

ऐसा लग रहा है कि कुछ देर पेहले यहां बारिश हुई है।

और पानी का कैंपर दिख रहा है।

आते जाते नज़र आ रहे हैं।

क्यारी जैसी दिख रही है। यहां रंग बिरंगे गमले नजर--